पेड़ पौधे लगे हुए हैं। काफी हरा भरा दिखाई दे रहा --

म बगल में बहुत सारी दुकान दिखाई दे रहा है।

और हरा कलर के बैलून से सजावट किया गया है ।

ऐ और एक आदमी खड़े होके --

इस घर के बगल में --

बगल में एक दुकान भी दिखाई दे रहा है।